ऊपर दो लोग रेड कलर की और पर्पल कलर की शर्ट में बैठे हुये है और काम कर रहे हैं ।

इस तस्वीर में काफी सारी मिर्च पड़ी हुई हैं मिर्च जमीन में पड़ी हुई हैं यहाँ पे एक आदमी के दो हाथ दिख रहे हैं। साइड में एक लाल कलर का बैग भी दिख रहा है और --

ये एक कमरा है। इस कमरे में दो खिड़कियाँ है जोकि खुली हुई है। इस कमरे में बोहोत सारे लोग बेठे हुए है। ये लोग एक लाल

इसमें एक आदमी का हाथ दिख रहा है जिस ने एक पत्ता पकड़ा हुआ है इस पते में खाने का कुछ सामान है इसमें प्याज पड़ी हुई है।

यहाँ सामने एक गाडी है जोकि टूटी हुई है और एक आदमी है जो इस गाडी को ठीक कर रहा है गाड़ी सफ़ेद रंग की है।

यहाँ पे काफी सारे गुब्बारे हैं जो रंग बिरंगे हैं पीछे नीले रंग का बैकग्रॉउंड है।